अपना वेट गेन अथवा वेट लॉस के लिए प्रोटिन सही प्रोटिन बाय करने आते है। यहाँ पर वे प्रोटिन भी नजर आ रहा है।

यह एक वेडिंग लॉन है जहां पर बहोत सारी लाइटें अथवा सजावटें हो रखी हैं।

ये एक सोरो शूक्कर क्षेत्र रेलवे स्टेशन है।

यहाँ पर कुछ ब्लैक क सिल्वर में टेबलें भी रखी हुई हैं और कुछ चेयर भी रखी नजर आ रही है यह सजावट बैलून से हुई है।

यह एक क्रिकेट का मैदान नजर आ रहा है। इस मैदान के गिर्द-गिर्द जाल लगे हुए हैं।

यह एक फुट बॉल का प्ले ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे फुट बॉल का गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं।